पेड़ भी दिखाई दे रहे।

और बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहे है।

फोटो में बहुत सारा आदमी है।

ऊपर में कपड़ा है येलो कलर और पिंक कलर और लाइट भी जल रहे --

बिल्डिंग मे लाइन रेड कलर का खींच के है।

इसमें फोटो चिपका के भी है और एक टेबल भी है।

यह एक रूम का अंदर में बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

एक घर दिखाई दे रा है बाहर में दो आदमी खड़ा हो के है।

यह एक घर है घर का कलर भी वाइट और ऊपर का टीना ग्रीन कलर का है।

दुकान का बाहर में फैन रखा हुआ है।

ये एक सोफा दिखाई दे रहा है।

ये एक रूम है उसका अंदर में बहुत सारा आदमी बैठा हुआ है।

इस फोटो में एक आदमी दिखाई दे रही है।

लोहा से बनाने वाला वॉल भी है एक साइन बांड भी है।